विशाल नाम है विशाल मेगा मार्ट --

कुछ आदमी है जोकि जा रहे हैं वह कुछ आ भी रहे हैं |

ये शायद शादी का फोटो है।

यह किसी गेट का फोटो हैं जहां पे लिखा हुआ हैं जिला अतिथि गृह।

यह एक कन्स्ट्रक्शन के साइट का फोटो है जहाँ पर कोई कन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है ओर यहाँ पर तीन आदमी है |

पोज़ दे रहा है | उसके पीछे बहुत सारे आदमी है जो की जिम कर रहा है और यहाँ पर बहुत सारे जिम के --

बेन्ड़ेज लगा हुआ है वह खड़े हैं और सामने एक आदमी है जो की --

और सामने जो ग्री आ गार्डन के जो सामने अभी दिख रहा है वो --

और सामने दो नाव दिख रहा है।